इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिखाया गया है जो की बहोत बड़ा है।

ऑफिस का दृश्य है जहां पर हमें एक व्हाइट बोर्ड और कुछ चेयर्स भी रखी हुई दिख रही है।

टांगे गए हैं और यहां खानो में भी कुछ समान रखा गया हैं।

मंजिल बनने का कार्य चल रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक झील की तस्वीर दिखाई गई है।

और उसके साथ एक व्यक्ति को खड़े हुए देख सकते है।

जोकि इस इमारत के बाहर खड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं।

ग्रे कलर का पेंट हो रखा है।

जहां पर पशुओं का चारा रखा जाता है।

इस तस्वीर में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई--

यहां पर हमें देखकर पता लगता है कि यहां पर कंप्यूटर --

पेट्रोल का ट्रक भी खड़ा हुआ देख सकते हैं यहां पर और भी कई सारी गाड़ियां--

रोड़ के साइड में रस्ते साइड में लगी है।

यहां पर हमें होटल रामा पैलेस लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां किनारों पर पेड़ पौधे भी लगे हुए है यहां का रंग हरा और पीला है।

यहां पर एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

व्यायाम करते हुए दिखाए गए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है।

यहां से हम मैदान में हो रहे खेल देख सकते हैं।